जे ब्लैक कलर की कार दिखाई दे रही है वहाँ पर ब्लैक भी है व्हाइट भी है वहाँ पर कुछ बोतल भी दिखाई दे रहे है और वहाँ पर एक स्टे भी दिखाई टेबल पर रखा हुआ है।

बहोत सारे पेड़ पौधे भी लगे हैं लगे-- लगे वहाँ पर एक खंबा भी दिख रहा है वो व्हाइट कलर का मुझे नजर आ रहा है ।

कोई ऐसा लग रहा हैजैसे कोई मतलब सरकारी चिकित्सालय होगा और बहुत सारी कार भी रखी हो कार भी कोई ब्लैक कलर मे नजर आ रहे हैकोई व्हाइट कलर मे नजर आ रहे है।

वहाँ पर हुडी भी बहुत लंबा गया है वो थोड़ा वा व्हाइट कलर मे दिख रहा है वहाँ पर जो बिल्डिंग है ना वो दो मंजिल बिल्डिंग दिख रही वहाँ पर कांच भी दिखाई दे रहा है वहाँ पर कुछ लाइट लाइट भी दिखाई दे रही है वहाँ लाइट के तार भी मौजू नजर आ रहे है ।

कोई रेडी टू रेक दिख रहा हैं और वहाँ पर बहोत सारे आदमी भी मुझे दिख रहे हैं और वहाँ वहाँ बहोत बड़ी दुकान सी दिख रही हैं कुछ एक फीमेल भी दिख रहे हैं कुछ वहाँ पर बाइक भी--

--रखी हुई है वहाँ पर और कुछ पेन्ट भी डला हुआ है भी दिख रहे वहाँ पर लाइट भी बहुत दूर तक दिख रही है मुझे यहाँ नजारा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और पेन्ट भी कई प्रकार के लग रहे है।

बारी वहाँ पर एक तस्वीर बड़ी साफ-साफ नज़र आ रहा है टावर भी बादल भी दिख रहे है वो कुछ पीले कलर के दिख रहे है वाइट कलर के दिख रहे है वहाँ पर बहुत सारे मतलब फूल भी दिख रहे है बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है देखने में--

सेम टू सेम वही दुकान दिख रही है इस दुकान में इतना सामान रखा है बहुत सारा सामान रखा हुआ सारी मतलब बॉटल भी रखे हुए है बहुत सारे ट्रे भी रखे हुए है वहाँ पर चेयर भी ले लिए सफेद कलर वाला भी।

पं. सुंदर लाल शर्मा मुक्ति विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर सा लगरा है वहाँ पर एक मेल है ना जो फोन पर बात कर रहे है और पार्क भी मुझे हरा -भरा दिख रा हैं।

ए प्रयोजनिक क्रिकेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पर बहोत टंकी छत पर टंकी भी पानी पीने के लिए दिखाई दे रही है वहाँ ग्राउंड में पीले रंग के भी कुछ एगो डाला हुआ है वो अला अलग मतलब वो नीला सा भी दिख रहा है।

टाइप की लग रही है बहोत बड़ी बिल्डिंग है बहोत सारे मकान बने हुए है बहोत धुप बहोत सारी खिड़की भी दिखाई रही है वहाँ कुछ मिल भी मिलते हुए पार्क मे दिखाई दे रहे है वहाँ पे बहोत सारा सीन अच्छा देखने को मतलब वहाँ पे हुआ है।

और सारी लाल कलर में दिख रही है मतलब पंखा भी बोलते है। ना बो भी दिख रा कुछ कैमरा सा भी दिख रहा है पर्दा भी मुझे लाल कलर में दिख राये है कुछ ब्लैक कलर में कुछ नीली से कलर में साफ नजर आ रहे है।